एक्सबोड टाइप और यहां पे ब्लैक कलर का ड्रेस है एक--

और एक रेड कलर का साड़ी है और एक बच्चा का ब्राउन और रेड में कुर्ता पजामा है।

यहाँ पे पत्थर भी है और पानी भी बहुत सारा है।

ऊपर येलो कलर का घर टाइप बना हुआ हैं।

पिंक कलर का घर है।

पे पीछे मे ब्लू कलर का पर्दा टाइप दिख रहा है।

तीन आदमी दिख रहा है एक ग्रीन पहना हुआ है और एक रेड में पहना हुआ है।

यहां पे का बना हुआ है साइड साइड में।

यहाँ पे बहुत सारा बैलून है अम व्हाइट और ब्लू में।

इसका प्राइज है एक में दिख रहा है तीन सौ पीछत्तर एक में तीन सौ पचपन एक में तीन सो नीनानवे एक में दो सौ नीनानवे--

व्हाइट कलर का और यलो कलर का घर टाइप दिख रहा है।

ये जगह बहोत ही साफ दिख रहा है।

साइड में अलमारी टाइप दिख रहा है और यहां पे चार बेंच लगा हुआ है ब्राउन कलर का।

एक कुर्सी है जो वो भी है डार्क ब्राउन में।

व्हाइट कलर का दीवार है।

लकड़ी टाइप बना हुआ येलो कलर का ब्लैक कलर का भी है।

एक पेड़ दिख रहा है दूर में--

ब्लैक कलर का जिसमें किया गया है वह ब्लैक कलर का है।

यहां पे रोड भी गया हुआ है रोड भी दिख रहा है।

एक लड़का कुछ दिख रहा है और उसके बगल में फ्रिज टाइप है शायद।

जोकि एक व्हाइट में है और एक मैरून में है।

आसमान बहुत ब्लू ब्लू दिख रहा है और ये जगह भी बहुत क्लीन है।

यहां पे पत्ता वात्ता भी बहोत सारा है।

यह जगह भी बहुत साफ है।